इसके गेट ऐसे आधे रेड कलर के लगे हैं।

इस दृश्य के अंदर काफी तंबू बना रखे हैं।

और एक बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ--

और के सर में पैसे --